यह एक घर है जो बहुत सुंदर दिख रहा है दो माले का है इसके पास में ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है इसके आस पास बहुत छोटे बड़े वृक्ष लगे

तो एक घर है बहुत ही सुंदर दिख रहा है इसके हॉल में एक और बहुत बड़ा घर दिख रहा है जो बहुत सुंदर दिख रहा है इसके आसपास बहोत (बहुत) डिज़ाइन बनाया गया है।

यह एक शिव होटल है इसमें एक बोर्ड लगा है उसमें शिव हॉस्टल लिखा है आइ_डी बहोत अच्छा बोहोत सुन्दर शहर है ये एक रूम है इसके आसपास बहुत घर दिख रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा हैं ।

मंदिर के ऊपर में झंडा भी लगा हुआ है बहुत सुंदर दिख रहे है इसके आसपास बहुत बड़ी वृक्षे बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है इसके आसपास आदमी भी दिखाई दे रहे है बहुत सुंदर दिख रहा है।

बहोत सुन्दर दिख रह है इस के आस-पास एक खम्बा दिख रहा है इस में खिड़की दरवाजे सब कुछ लगा हुआ है बहोत सुंदर दिख रहा है।

यह एक गराउंड है जो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है इस के आस-पास बहुत गार्दिया है बहुत सुंदर दिख रहा है ग्राउंड में पेड़ दिखाई दे रहा है बोर्ड भी लगा है यहाँ खिड़की दरवाज़े दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ा घर है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

बहुत सुन्दर दिख रहा है अच्छा दिख रहा है घर बहुत इसमें खिड़की दरवाजे बहुत कुछ लगा--

यह एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा घर है जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है इसके आसपास बहुत खंबा दिखाई दे रहा है इसमें बहुत खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत सुंदर इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा रूम है यहाँ पर बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पर एक आदमी भी दिखाया गया है यहाँ पर एक कुर्सी पर भी बैठे है यहाँ पर दस बिस कुर्सी रखाया है यहाँ पर एक आदमी भी दिखाया गया है।